दे रहे हैं और बहोत सारी लाइटे भी--

फोटो में हमें एक बड़ी सी--

इस फोटो में हमें एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा--

जिसमें बहोत सारी खिड़कियां लगी हुई है।

यात्रिगढ़ आते जाते दिखाई--

दे रहे हैं और मशीने भी लगी हुई दिखाई --

रही है जहां पर कुछ यात्री आते जाते दिखाई दे रहे--

ढोलक भी रखी हुई दिखाई--

एक कुर्सी भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और हरे भरे पौधे भी दिखाई--

जिसमें कुछ टेबल्स भी रखी हुई दिखाई--